उसका चित्र देख रहे हैं और उसके प सामने हमको कुछ मोटरसाइकिल गाड़ियाँ है नजर आ रही हैं।

और यहाँ देख सकते हैं ये इमा ये इमारत काफी भव्य काफी विशाल है।

और विज्ञापन पे हम कुछ देख रहे हैं कि लिखा हुआ है जन संवेक्षण दो हजार बाईस और यहाँ पर देखें तो सड़क में भी --

परपड़ यानी जामनी कलर के फूलों से सजाया गया है और इसके ऊपर --

दिए गए चित्र में हमें एक दुकान नजर आ रही है जोकि किताबों की दुकान है और यहाँ पर किताबें बहुत सारी रखी हुई है काफी बड़ी दुकान है।

और दुकान में एक सीढ़ी नजर आ रही है सीढ़ी इसलिए रखी गई है ताकि ऊँचे दरवाजों पर जो किताबें हम नहीं ले सकते वो सीढ़ी पर चढ़ के ले सकते हैं।

इस चित्र में हम एक देख रहे हैं यहाँ पर ये गुरुद्वारे का दृश्य है जहाँ पर अ बहुत सारे भक्त लोग बैठे हुए हैं गुरु की वाणी सुन रहे हैं।

और गुरुद्वारे का जो स सब दृश्य है बहुत ही मनमोहक है बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ आके मन को बहुत ही शांति मिलती है।

और सामने हमारे लोग और मजदूर लगे हुए हैं पिलर्स खड़े हो रहे हैं लोहे के सराखे यानी सरिया हमें नजर आ रहा हैं।